ब-बिल्डिंगें नजर आ रही हैं ए एक बहोत बड़ा मेला लगा है जहाँ लाखों की संख्या में जनता नजर आ रही है।

यहाँ पर बहुत सारी हिरण दिखाई दे रहें हैं और एक जाली लगी हुई है हरी-हरी घास को जो ह हिरण चल रही है।

बड़े-बड़े वृक्ष लगें हुए है बिल्डिंगें दिखाई दे रही है और पत्थर कंकड़ पड़े हुए हैं यहाँ पर आपको आपको बहोत सारा सामान दिखाई दे रहा --

ये एक किराना स्टोर है यहाँ पर आपको बहुत सारा किराने का सामान दिखाई दे रहा है प्लास्टिक के डिब्बे डिब्बे रखे हुए है।